यहां सामने एक लड़का चाय पी रहा है।

आदमी है वह मेज पर बैठा हुआ मेज पर एक भी रखा हुआ है।

यह जिम कर रहा है।

और ये पंखा है एक ऊपर लग रहा जो--

यह एक शॉप है जिसमें बहोत सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं और सामने--

वह एक ए_टी_एम हैं जिसमें तीन यादमी खड़े हुए हैं।

पेठा और बहुत सारी सब्जी रखी हुई है।

सामने दो तीन लड़कियों के चित्र भी लगे हुए हैं।

यह एक हाथी है जिसके बहोत सारे --

के सामने एक पुल भी दिखाई दे रहा है लोहे का।

इस पिक्चर में एक मंदिर है।

और एक नंदी महाराज बैठे हैं।

पीछे घड़ी है एक और ऊपर सजावट का सामान सा है ये।

और एक गेट है जिसमे ताला सा लगा है एक--

और पीछे लीले रंग का रंग स्वराज पे--

और बस के ऊपर बहुत सारे आदमी चढ़ रहे हैं।

और नीचे रोड है ये पक्का--

सामने की तरफ एक अस्पताल सा है।

यह एक नदी है और इसके सा पुल है एक और इस पे आदमी खड़ा एक।

और एक ये लाइट सी लग रही है।

ये हमें बहोत सारी ट्रॉफी भी दिखाई दे रही है।

बैनर भी लगा हुआ है।

यह एक नदी का तट दिखाई दे रहा है जिसके सामने घास की झोपड़ी भी बनी है।

और एक अंजन और एक कैन और वेह दो आदमी भी खड़े है।

दो स्कूटरी और तीन बाइक तीन चार बाइक और व एक गाड़ी --

पत्थर की टाइल भी है रखी।

यह सामने टीन पर एक आदमी भी चढ़ा हुआ है वह सामने लाइट भी लगी हुई है।

सामने साइकल के स्टैंड भी खड़े हुए--

लगे हुए हैं जिन पर साइंकल खड़ी हुई है।